बंद रखी शीशे का दरवाजा खुला है। रेड और व्हाईट कलर की।

एक लोहे का पाइप है जिसपे बहुत सारे कोट वगैरा टंगे हुए हैं रैपर में पैक हैं एक स्टील का--

जहां पे आदमी रहते हैं पर्दा वरदा डाल के--

और पौधे हैं लाल लाल फूल हरे कलर के पौधे पीछे बहुत अ जंगल आ दिखाई दे रहा है एक लाइट है।

यहां पे कंपनी है बहुत बड़ी बड़ी सी सिक्योरिटी गार्ड बैठा है कुर्सी ले के।

मैं ये एक पार्क है पार्क में बहुत सारे बच्चें हैं बच्चे तरह तरह के कपड़े पहने हैं बच्चे ग्राउंड में खड़े हैं हरे हरे घास हैं मिट्टी है।

पानी ठंडा हुआ है साथ में बिल्डिंग है एक खंबा है जिस पे लाइट लगी हुई है।

ये एक शॉप है जिसमें दो सोफे सेट रखे हुए है डिजाइन वाली कुर्सीया हैं व्हाइट कलर के पर्दे हैं।

दीवार है और एक दीवार है कॉफी कलर के चेक के फूलों वाली।

एक खंभा है लाइट आड़ा ऊपर ते डोरी जारी है। बोहोत सारे पौधे हैं।